इस तस्वीर में विभिन्न प्रकार कि टाइलों का संग्रह दिखाया गया है जो संभवत कि--

पिंक रेड ब्ल्यू ब्राउन कलर के कपड़े टंगे हुए है।

ओर यहां पर लाइट भी जल रहे हैं और यहां पर कांच के गिलास भी लगे हुए हैं।

यह एक सी_एन_जी फ्यूल स्टेशन है जहां वाहनों में सी_एन_जी भरने की सुविधा उपलब्ध है।

मैं एक आधुनिक सीएनजी मशीन दिखाई दे रही है जिसमें--

कुछ लोग स्टेशन पर काम करते हुए नजर आ रहे है जिनमें एक व्यक्ति रसीद या हिसाब किताब करते हुए दिख रहा है।

दुकान भी लगा हुआ है दुकान का नाम है सुधा पर्ल --

पेड़ पौधे लगे हुए हैं और इस पिक्चर में एक नदी भी जा रही है और स्स इधर --

आ रहे हैं इसमें एक कैफ़े का नाम बेल्जियम वाफ्ल है दूसरे कैफ़े का नाम ला पिनो पिज़्ज़ा है तीसरे कैफ़े का नाम और ओवो है।

मंदिर के बाहर इनको तोपने के लिए एक पर्दा लाल कलर का पर्दा भी लगाया गया है और यहां पे स्टील का बैरिकेट भी लगा--

इस पिक्चर में एक मच्छी मार्केट जैसा दिखाई दे रहा है जहाँ--

उसका नाम चूलाधर रियल देसी टेस्ट है यह एक भारतीय भोजनालय प्रतीत होता--

है जो गुजराती पंजाबी काठियावाड़ी साउथ इंडियन और चाइनीस व्यंजन पेरोसता है।

कुछ लोग रेस्टोरेंट के बाहर खड़े है और कुछ लोग अन्दर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

से यह जग एक छोटा जल प्राप्त झरने जैसी प्रतीत होती है चारों ओर हरियाली और संत वातावरण स्थान--

और लेक व्यू के पीछे एक दो बिल्डिंग भी हैं।

ढेर सारे आदमी भी खड़े हुए हैं और इस लेवी में एक डस्टबिन भी है।

फर्श पर हरे रंग का चमकदार संगमरमर लगा हुआ है जिसमें सफेद रे--

आगे की ओर कुछ पौधे काले प्लास्टिक के बैग में भी रखें हुए हैं ऊपर हरे रंग के छाये--

इस तस्वीर में एक निर्माण दिन भवन का दृश्य दिखाई दे रहा --

यहां कई मजदूर काम कर रहे हैं ईंटों से बनी दीवारों को देख--

कुछ मजदूर निर्माण सामग्री ढ़ो रहे हैं जबकि अन्य ईट लगाने द दीवार--

पीछे का दृश्य खुला क्षेत्र दिखाता है जहां कुछ संरचनाएं पाइपलाइन और एक छोटा सा हरा पेड़ मौजूद है ऐसे लगता है कि यह किसी अधिक क्षेत्र--

बीच चौराहे में छत्रपति शिवाजी महाराज का मूर्ति स्थापित किया गया है और ये मूर्ति काफी सुंदर भी--

जहां जस्ट फ्रेश दुकान के सामने कई आदमी लोग बैठे हुए हैं।

और उसमें से दो आदमी खड़े हैं जिनके एक--

घर भी दिखाई दे रहे हैं जहां घर के पीछे हरे भरे --

और ये कार के आजू बाजू में भी ढेर सारी कार भी हैं।

और इस तस्वीर के पास में ढेर सारी बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

से सुंदर स्तंभ है जो सफेद टाइल्स से ढके हुएं हैं।

और उन पर सुनहरे रंग की सजावट की गई है छत हल्के गुलाबी रंग की है जिसे--

रू और लोहे की सपोर्ट से बनाया है और इसमें कुछ पंखे भी लगे हुए हैं।

यहां पे लकड़ी के फर्नीचर बने हुए है और उस फर्नीचर के ऊपर ढेर सारे कपड़े--

बेचें हैं जिन पर रंगीन पट्टियां लगाई हुई हैं।

इस प्ले फ्रिज नजर आ रहा है जिसमें विभिन्न प्रकार के केक और मिठाइयां रखी गई है।

प्लॉट नंबर इसका चार सौ आठ न्यू जी_आई_डी_सी गुंडलॉ--

वलसाड थ्री नाइन सिक्स जीरो थ्री फाइव गुजरात में है जी_एस_टी नंबर इसका टू फोर ए ए सी सी जी नाइन फाइव टू नाइन एम वन --

इस पिक्चर मे एक नदी दिखाई दे रही है।

यहां नदी के ऊपर दो तीन बोट भी तैर रहे हैं।